ऑरेंज कलर की और एक टेबल के ऊपर कुर्सी टेबल के ऊपर कुर्सी और एक ग्लास --

ये एक रिसॉर्ट की पिक्चर्स लग रही है यहां पे एक--

गोला आकार पे कुछ बना हुआ है।

ये एक कैफे लग रहा है यहां पे ये यहां पे एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है ये व्यक्ति कैफे के अंदर है।

दो व्यक्ति यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है यहां पे दो साइकिल खड़ी हैं एक व्यक्ति साइकिल को पकड़ कर खड़ा हुआ एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ--

मजदूर यहां पे खड़े हुए गिट्टी भी गिरी हुई है ईट भी रखे हुए हैं।